और दिया जल रहा है देखिये नारियल बजरंग बलि कोना में रखा हुआ सब चढ़ाये है फोड़े है सब वहाँ पे रखा हुआ है और ये मंदिर भी बहोत अच्छा बहोत भयंकर लग रहा है देखने में कितना सुन्दर लग रहा है ये समाय--

यहाँ देखिये एक ठी आदमी है ये कितना अच्छा डेकोरेशन बना रहे है देखिये शादी का मैरिज हॉल बन रहा है शायद लग तो रहा है अरे व बॉल जल रहा है अंदर में लिकिन बॉल ऐसा जल रहा है यार लेकिन खाली बॉल ले दिख रहा है बाकि तो कुछ नहीं दिख रहा है इसका क्वालिटी भी कुछ होगा।